और एक स्कूटी भी खड़ी हुई है और और गेट भी लगा हुआ है।

और इसके आसपास कुछ आदमी भी खड़े हुए हैं।

इसके पीछे एक कुलर भी रखा हुआ है और--

और उनके सामी गेट भी लगा हुआ है और बहुत सारे पेड़ भी है।

और एक छत के ऊपर एक वाइपर पड़ा है।

ये एक जिम है और उसके अंदर जिम का बोहोत सारा सामान पड़ा हुआ है।

और इसमें कुछ टेबल भी पड़ी हुई है और टेबल के पास दो आदमी बैठे हुए हैं।

एक आदमी खड़ा हुआ है और इसके अंदर गुब्बारे भी लगे हुए हैं।

यह एक पुराना मकान है इसके ऊपर एक डिश भी लगी हुई है।

और इसके अंदर बहुत सारे कलर के फूल भी लगे हुए हैं।

यह एक गोदाम है और इसके अंदर कुछ साइकिले भी खड़ी हुई है।

यह एक तेल पम्पा है और इस तेल पम्पे के अंदर एक सूखा पेड़ भी खड़ा हुआ है।

यह एक होटल है और इसके अंदर कुछ टेबल भी पड़ी हुई है।

और कैमरे मैन भी खड़ा हुआ है और इसके पास औरतें और कुछ आदमी भी खड़े हुए हैं।

यह एक बाग है और इसके अंदर बहुत सारे अमरूदों के पेड़ लगे हुए हैं।

और बाहर की साइड दो कुर्सियां भी पड़ी हुई है और फूलों की मालें भी टंगी हुई--

यह एक मेडिकल स्टोर है इसके अंदर एक लोहे का फ्रेम रखा हुआ है।

यह एक मकान है और इसके बाहर एक एंबुलेंस भी खड़ी है।

और इसके अंदर एक आदमी पगड़ी बांध कर बैठा हुआ है।

और टेबल के ऊपर दो नमक की डब्बी रखी हुई हैं एक पानी की बोतल दो गिलास दो कटोरी भी रखी हुई है।

यह एक गॉर्डन है और इसके अंदर हरी हरी घास भी लगी हुई है।

और इसमें फुल के पौधे भी लगे हुए हैं और इसके चारों तरफ स्टील की रेलिंग भी लगी हुई है।

और पीछे एक साइकिल पे भी आ रहा है और इसके पीछे एक घर भी है।